यह तस्वीर में भगवान बुद्ध की स्टेचू देख रही हूं।

दुकान का शटर ब्लू कलर की देख रही हूं।

सीलिंग में एक सीलिंग फैन हल्का सा दिख रहा है।

ग्राउंड में बैठने के लिए ब्रेंच देख रही हूँ।

कुछ हेडफोंस की पैकेट देख रही हूं और यहां पे टेबल्स भी मैं देख रही हूं।

एक स्टील की ग्लास देख रही हूं।

नीचे फ्लोर ब्लैक कलर की देख रही हूँ।

सामने की तरफ दो तीन लड़का देख रही हूं।

दुकान के सामने दो महिलाएं मछली देख रही हैं देख रही हूं।

ये एक दुकान की तस्वीर है जहां पे सामने की तरफ में व्हाइट कलर के पिलर में एक घड़ी देख रही हूं।

सामने की तरफ ग्रीन पेड़ देख रही हूं।

सामने की तरफ एक आईना देख रही हूं।

एक वॉल देख रही हूं मैं।

प्लेट के ऊपर में एक केले के पत्ते भी देख रही हूं।

सामने तरफ में दो स्टील का गिलास भी देख रही हूँ।

इस घर के पीछे तरफ और एक काठ का घर देख रही--

ये तस्वीर में मैं भगवान की प्रतिमा देख रही हु।

एक सीढी भी रखी हुई है देख रही हूं।

एक आदमी के हाथों में फोन देख रही हूं।